यह एक दृश्य है। इस दृश्य में हमारे सामने --

किसी कंट्रक्शन साइड का ऊपर काम करता है। यह अपनी सेल्फी से फोटो क्लिक कर रहे हैं। यह अपने फ़ोन से --

खोल रखा है। ये साड़ी पाँच मीटर की है। यहाँ पर नीले रंग की साड़ी है। गुलाबी हरी लाल रंग की साड़ी है जोकि चमक रही है।

एक पूछ है। ये बहोत ही अच्छा नजर आ रहा है। ये खेत के अंदर --

गली के अंदर पुराने घर हैं।

म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स किए है जहाँ पर --

ये बच्चे सभी अनाथ और गरीब हैं।

ला है। यहाँ पर अंदर जाते हुए --

एयरटेल नाम की कंपनी का है। जहाँ पर एयरटेल वालों ने अपना --